यहा पे एक मैदान दिखाई दे रहा है। जिसमे यहा कुच्छ लोग योगा कर रहे है। एक खुर्ची दिखाई दे रही जिसपर दो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है जालिया लगी हुई दिखाई दे रही है। मकान दिखाई दे रहे है।

एक बाइक सर्विस की दुकान दिखाई दे रही इसमे ऊपर एक बलब टंगा हुआ है म म बिजली का मिटर लगा हुआ है केबले दिखाई दे रही है।

यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है पूल दिखाई दे रहा है। एक साईकल दे रही है पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसने लाल कलर की टीशर्ट पहने हुए है।

यहा एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक व्यक्ति और उसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है।

यहा एक हॉल दिखाई दे रहा है। इसमे बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है। माइक लगा हुआ दिखाई दे --

यहा कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है जिन्होने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए है एक ने है मुकुट पहना हुआ है एक ने मास्क लगाया हुआ है।

यहा एक दुकान दिखाई दे रही है जिसपर बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है जालियाँ लगी दिखाई दे रही है काँच के --

एक मंदिर जिसमे सामने मूर्ति रूपित दिखाई दे रही है मालाए टंगी हुई दिखाई दे रही है माला ओ का कलर हारा पीला--